बिल्डिंग बनी हुई है जो कि सफेद कलर की इमारत है कुछ कपड़े है जो के आस पास कॉरिडोर में लटके हुए है बिजली के खंभे है तार जा रहे है बिजली के--

आस पास का फर्श बना हुआ है जो काले और सफेद रंग का है इसके चारों और की सीमा दूर-दूर तक कई पर्वतों को दर्शाती है कुछ लोग हैं जो उठ खड़े हुए हैं ।

एक बड़ा- सा बैनर लिखा है लगा है हुआ है जिसपे आर. के कॉफी स्टॉल है साइड से एक लड़की की पोस्टर लगी हुई है कुछ लोग बैठे है एक आदमी खड़ा है जिसपे काउंटर पर दो बर्निंगे रखी है काँच की एक में बिस्किट एक में नान खटाई हैं।

ये वन रूपीस का कैश बैक मिलेगा सामने मशीन है जो की ऑरेंज कलर की है अंदर आस-पास टाइल्स लगे हैं सफेद --

-- शिप है जिसके ऊपर टायर लटके हुये है नीचे बहुत बड़ी बड़ी खिड़किया है एक समुन्द्र है जिसके अंदर बहुत सारा पानी है पीछे आसमान है।